और मैन रोड पर गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही और --

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यह एक रेलवे क्रॉसिंग पुल यहाँ पे --

ये यहां पर लड़कियों की नजर आ रही है।

और मछी पकड़ रहे है ये तालाब में से फिश लेकर कैरट --